मुझे इस फोटो में दिख रहा है ये एक मिनी ट्रक है।

ये एक प्ले जोन है जहां पे।--

जहां पे अलग अलग केबिन बने हुए है इस ऑफिस में।

जहाँ पे एंट्रेंस में फूलों से सजाया गया है साइड में बड़े बड़े फ्लावर पॉट्स लगे हुए हैं।

मुझे इस फोटो में नजर आ रहा है ये एक अमूल की शॉप्स है।

जहां में हॉल में ब्लू कलर का वॉलपेपर लगा हुआ है। वही पे--

वहीं पे एक सफेद कलर की एक गोल्डन कलर की कार के बोनट खुले हुए हैं।

यहां पे एक सरकारी गाड़ी खड़ी हुई है।

पेड़ के वहीं पे एक आदमी शॉर्ट्स और ब्लैक कलर की बनियान पहने हुए खड़ा है।

और कुछ कपड़े डिस्प्ले में लपेटे हुए रखे--

दूसरी साइड में जेंट्स वॉलेट डिस्प्ले किये गये है।

मुझे इस फोटो में नजर आ रहा है ये एक--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

यहां पे बहोत सारे बुक्स है फोटो टंगे हुए है वही एक आदमी बाहर हो खड़े होके--

कुछ शटल्स रखे हुए हैं और फुटबॉल रखे हुए है।